सामने एक बाइक खड़ा है एक लड़का मोबाइल से सैलून का फोटो खीच रहा है सैलून की अदर साइड में बहुत सारी दुकान हैं।

फील्ड की चार-पांच में बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है। कुछ लैंप पोस्ट भी है। आसमान में संस दिखाई दे रहा है।

इधर एक बड़ा-सा काउ खड़ा है।

इधर पे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान की बहार बहोत सारे कुरकुरे चिप्स का पैकेट है।

पेट्रोल पंप के सामने दो लोग दिखाई दे रहा है एक --

इधर एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है रेस --

कुछ छोटा पेड़ है कुछ बड़ा पेड़ है।

होटल बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है।

चेयर भी दिखाई दे रहा है दियाल में भी कुछ पिक्चर है बहुत सुंदर लग रहा है।

सामने एक लैंड भी दिखाई दे रहा है लैंड में एक स्कूटी खड़ा है।

इधर एक बैंक ऑफ़ बरोदा की ऐ.टी एम. दिखाई दे रहा है।

कार की लूकिंग ग्लास भी दिखाई दे रहा है दूर में ब्रिज में बहुत सारी गाड़ी चलती है।

इधर एक बुक स्टॉल है। बुक स्टॉल बहोत बड़ा है।

चार-पाँच में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा हैं दूर में एक भी दिखाई दे रहा है इधर रोज बहुत सारे लोग आते-जाते हैं ।

इधर एक फिश मार्केट है मार्केट बहुत बड़ा है सामने एक बड़ा-सा फिश दिखाई दे रहा है।

बाइक एक स्कूटी खड़ा है दो लोग भी खड़ा है।